और दीवारे में फूल बने हुए पिंक कलर के और दीवार में एक पेंटिंग भी उसकी शक्ल ढकी है।

मुझे इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिख रही है।

और पीछे दो एक्सरसाइज करने वाले वस्त्र रखें हुए हैं और आगे भी एक आधे दिखे हुए वस्त्र रखें हुए है।

तस्वीर में एक क्लासरूम को दिखाया गया और आधे कुर्सी दिख रहे है और पीछे दीवार के येलो और ऑरेंज कलर --

और ऊपर सीलिंग में बहुत सारे लंबे लंबे लाइट भी जले हुए हैं और इसके फ्लोर सफेद रंग का है और फ्लोर में लाइट की छाया भी दिख रहे हैं जले हुए।